अभी एक आदमी सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है और बैग टंगा हुआ है।

उसके सामने में दो आदमी खड़े हैं और एक आदमी मोटे हैं और एक आदमी पतले दुबले हैं।

मोबाइल नंबर भी लिखाया गया है उसके नीचे शटर भी लगाया गया है।

सामने में फल का दुकान है।

सामने दो आदमी बैठें हुएं हैं एक लेडीज़ है एक जेंट्स है।

इधर में एक ब्लैक कलर का कुछ रखा हुआ है।

और उसके सामने लाइट भी लगाया गया है।

यह एक दुकान का तस्वीर है जहां पे एक पोस्टर पे लिखा गया है लाल कलर से।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है।

और लकड़ी से बना हुआ कुछ दृश्य है ।

जो ऑरेंज कलर का फूल है और सफेद कलर का और लाल कलर का भी है।

बस के किनारे पे बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग का कलर सफेद है और हल्का ब्लू भी दिखाई दे रहा है।

दो बच्चियाँ भी है एक औरत भी दिखाई दे रहे है।